इस फोटो में एक घर बन रहा है।

और लकड़ी के फंटे किनारे किनारे लगे हुए हैं।

पीछे बोहोत सारे घर दिख रहे हैं। एक गमला भी दिख रहा है।

सोफे के पीछे पेड़ भी लगे हुए हैं।

लकड़ी के टेबल भी रखे हुए हैं।

और साइड में रेड कलर का डिब्बा रखा है।

इस फोटो में सामने एक बोर्ड रखा हुआ है बड़ा सा।

नाव में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

और उसमें बहुत सारी जलेबियां रखी हुई है।

एक दीवाल उठी हुई है उसमें केले का पेड़ लगा हुआ है।

पर रंग बिरंगी पेंट हुआ है और इमोजी भी लगे हुए हैं।

सामने लकड़ी की अलमारी बनी है उसमें बहुत सारे सामान रखे हैं एक गेट भी दिख रहा है।

बड़ा सा गेट लगा हुआ है और रेलिंग भी लगी हुई है।

इस फोटो में एक रोड दिख रहा है। रोड के किनारे किनारे बड़े-बड़े पोस्टर लगे हुए हैं।